किसी प्रोग्राम का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोग चेयर पर बैठे हुए --

और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैर है |

यह पिक्चर एक बहुत बड़े किसी खाली जगह की है और जहां पर कुछ पेड़ पौधे उग रहे है।

प्रदर्शित हो रही है और इसमें चिम्पांज़ी --

ये योग दिवस का लग योग दिवस का लग रहा है इसमें सभी बॉय्ज --

नाम ए.के. गुप्ता मोटर्स लिखा हुआ है |

यह पिक्चर एक नदी की है।

और बहुत बड़ा गार्डन है और यहाँ पर एक दो तीन बाइक --

की गई है जो की फूलों से की गई सजावट है ।

जोकि लाल कलर से सर्किल में कलर दाल रही है और कुछ वाइट कलर से फ्लावर्स बना रही है |

ये पीछे की दीवाल रेड कलर की है |

बहुत सारी लड़कियां क्रिसमस डे मनाते हुए दिखाई दे --